अम यहाँ पे हमे क्लास रूम शो हो रही है जहां पे साइड मे भगवान जी की फोटो लगी है वो हमे दिखाई दे रही है ब्लैक बोर्ड हमे यहाँ शो हो रहा है जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

जहाँ पे हमे उसकी विंडोस वगैरह दिखाई दे रही हैं कुछ बैनर लगे है उस चीज का नाम लिखा है वो हमे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रोड पे गाड़ी हमे दिखाई दे रही है लाइट के खंबे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे हमें एक कोचिंग क्लासेस हमें यहाँ पे शो हो रही है।

अम यहाँ पे हमे मूर्ति दिखाई पंडाल दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमे दुर्गे जी की मूर्ति दिखाई दे रही है कार्तिक जी की दिखाई दे रही है गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

कोई सेंटा क्लॉस बना है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत से बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो सेंटा की कैप पहने हैं स्टार हमें शो हो रहा है बहुत सारे बैलून हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं माइक हमें शो हो रहा है लाइटिंग शो हो रही है कोई स्पीकर --